यह पूरी तरह से खाली ही है। इसमें सफेद कलर किया गया हुआ है खंभा का ऑरेंज कलर किया गया हुआ है।